यह तस्वीर एक चर्च की है।

जिसमे बहुत ढेर सारी लाईट लगी हुई है लाल और हरी।

काफ़ी डिजाईन बनी हुई है।

लगा हुआ है और उस बैनर में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

अ गेस्ट हाउस जैसे दिखाई दे रहा है।

और सैलून के अंदर कुछ लोग बैठे हुए है।